बहोत सारे घास पूस दिखाई दे रहा है।

एक ए_टी_म भी दिख रहा है।

यहां मुझे एक स्टार भी दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर ऐ_सी भी दिखाई दे रही है।

जो बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

ये पीछे में बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रही है और एक छोटा सा मंदिर में दिखाई दे रही है।

सड़क के किनारे में मुझे बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे पानी दिखाई दे रही है।

पानी के किनारे में बहोत बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रही है और आसमान में बहुत सारे बदले हैं।

और बहोत सारे किरकी दिखाई दे रही है।

एक ड्रॉवर भी दिखाई दे रहा है।

पीछे मुझे बहोत ज्यादे अलग अलग दवाइयां दिखाई दे रही हैं।

यहां पर एक लंबा सा ब्रिज भी है।

लाल मिर्ची भी दिखाई दे रही है।

जो पुराने और काले हो गए हैं ऊपर मुझे एक पंखा भी दिखाई दे रही है।

और नीचे फ्लोर में लाल कलर का पेंट गिरा हुआ भी दिखाई दे रही है।

और सफेद कलर के कुछ मशीन दिखाई दे रही है यहां पर एक बास्केट भी रखा हुआ है।

हॉल में मुझे कुछ सामान रखा हुआ डिखाई दे रही है।

मुझे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है अंदर में मुझे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रही है और सफेद कलर की बेंच रखी हुई है।

यहां मुझे हाईवे दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे दो पत्ता का घर दिखाई दे रही है।

छत के ऊपर में त्रिपाल रखा हुआ भी दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे मेला दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर एक आदमी स्पीच देते हुए दिखाई दे रही है।

और दरवाजे पर लाल कलर का डोअर मैट लगा हुआ है वॉल में बहोत सारे तस्वीर है।